और एक काले रंग का और --

बड़ा सा भगवान की झांकी दिख रही है जिसपे लाल--

दुकान है यह दुकान चाय की है दुकान पे हरे रंग का पेंट हो रहा है।

कुछ खा रहे हैं यहां पे और उनके पास स्कूल बैग भी है।

मैरिज हाल है इसके मेन गेट पर अलग अलग तरह के--

एक बगीचा है बगीचे में छोटे छोटे बहुत सारे पौधे --

उसके सामने एक स्टील की रेलिंग लगी है और नीचे टाइल्स का रंग --

मैदान है और यहां पर तीन खजूर के पेड़ लगे हुए है।

नीचे की तरफ मैदान मे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं।

मंदिर भी बना हुआ है और वहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।